यह बहुत बडा जिम का दृश्य है जो की टीम जिम में बहुत सारे डंबल रखे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा नदी का चित्र जिसमें बहुत सारे महिलाएं--

यह सामने दो कुर्सी है जो सिंगल --

ऊपर में नौ मंजिला है जो सर सब कांच खिड़कियों से घिरा हुआ है।

वह कार में चार टायर है टायर सफेद रंग का है।

एक बीच में कुर्सी भी है साइड में एक केबिन भी ह--

यह एक बहोत बड़ा रोड के किनारे बसा हुआ मार्केट है जो की बहोत सारे दुकाने हैं।

और एक बहुत बड़ा नर्सरी का चित्र है जिसमें कुछ बड़े बड़े बड़े आम के पेड़ हैं।

जिसमें बहुत सारे बर्थडे केक रखे हैं।

उस क्लास में दो खिड़कियां तीन खिड़कियां जो कि लोहे कलर का गेट है।

बहुत सारे बिजली के तार है साइड में बहुत सारे बिल्डिंग हैं।

और रूम में बहुत सारे आदमी है तीन चार पंखे हैं दो चार लाइटें भी हैं।

एक हरे कलर का मग भी है पीछे दीवार सफेद कलर से पें--

एक बहुत बड़ा बुक्स एंड स्टोर का दृश्य है।

साइड में कुछह शटर है जो कि दुकाने बंद हैं और दो आदमी खरीद रहे हैं।

एक एल_ई_डी भी हैं एक सोफा सेट है एक कुर्सी है बीच में एक टेबल --

एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का दृश्य है।

रे रेडियम पॉइंट एक आदमी भी बैठा एक बाइक भी--

पुरखी के रोड के किनारे बसा हुआ बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

वह थोड़ा बाइक का शोरूम में जो की सभी स्कूटी हैं।

इसके पीछे एक बहुत बड़ा पोस्टर हैं जिसमें स्कूटी का चित्र है।

एक आदमी बैठा है साइड में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है उसके पास बहुत सारे हेलमेट है शीशे में बंद हैं।

ब्लैक कलर का जैकेट है और काउंटर में कोई भी नहीं है।